किताबों की दुकान है। दुकान में लाइटें लगी हुई है ।

एक लड़का खड़ा है शर्ट उठा कर पेट दिखा रहा है।

कारखाना है कारखाने में काम चालू है।

शादी का मंडप सजा हुआ है जगमगाती लाइटें जल रही हैं घांस है।